यह एक दुकान है। इसका नाम उत्तम मिल्क डेयरी है।

साइड में बड़े पेड़ दिख रहे हैं। ऊपर तार है और उपर आसमान है।